पेड़ पौधे हैं यहाँ बहुत सारे और पीछे घर है आसमान है और खूब अच्छा-अच्छा ग्राउंड है और यहाँ लोग आते रहते हैं झूला झूलते रहते हैं।

यह ट्रैन का एक पटरी हैं यहाँ ट्रैन आते रहते हैं और यात्री लोग यहाँ उतर कर बैठे रहते हैं और तीन ठोक कुत्ते खड़े हैं और एक आदमी खड़ा हैं और ऊपर में आसमान हैं।

यह एक जिम है इसमे एक आदमी लेट कर बॉडी वॉडी बना रहा है ओर दो तीन आदमी बैठे हुए है और दो तीन आदमी और बना रहे हैं बॉडी ऊपर मे लाइट बर रहा हैं और नीचे मे--